भूरे रंग के हैं आसमान नीले रंग के बादलों से और सफेद रंग के बादलों से घिरा हुआ है।

कांच के दरवाजे खिड़कियां बनी हुई हैं। बाहर की तरफ बहुत सी सुन्दर इंडिया के झंडे लगाए हुए हैं जो कि कांच के दरवाजे पर लगाए हैं।

आसमान नीले और सफ़ेद रंग के बादलों से घिरा हुआ है।

बड़े बड़े पानी के लिए नीले रंग की पाइप लगाई हुई है। बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं जो कि सफेद रंग की इमारतें हैं।

छतों पर बहोत ही सुंदर आस-पास मिरर लगाए हुएं हैं ओर --

जिसमें एक दीवार पर दुर्गा देवी मंदिर लिखा हुआ है। चारों तरफ --